यहां पर एक वोट खड़ी हुई है।

बाहर लिखा हुआ है श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज शामली।

पेड़ पौधे लगे हुए काफी सारे--

और यहां पर सामने काफी सारे पर्दे और काफी सारे फूल लगाए गए हैं।

आसपास काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

और यहां पर काफी व्यक्ति और महिलाएं भी हैं।

काफी हरियाली है और यहां पर सामने एक वाटर टैंक लगा हुआ है।

यहां पर सामने काफी सारे पेड़ पौधे और घर है।

यहां पर सामने काफी सारी बड़ी बड़ी इमारत बनी हुई हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर पास में कुछ बाइके खड़ी हुई है और व्यक्ति भी है।

इस क्लास रूम में काफी सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

यहां पर एक होटल है। इ --